साइकिल के सामने एक ग्रीन कलर की साइकिल रखा हुआ है।

दुकान को पीला काला बैलून पे सजा हुआ है और बहुत सारी चेयर्स रखा हुआ है और एक टेबुल फैन है।

एक नौका के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक नौका पट्टी लगाके रखा हुआ है।

सामने दरवाजा भी काच कांच में ढका हुआ है और कुछ सीढियां है।

बिल्डिंग के सामने छोटे छोटे गमला के ऊपर पौधे बहोत सारी है।

शॉप का नाम चामुंडा नोबिलिटी स्टोर जेंट्स एंड लेडीज ।

एक बीच है बीच के पास एक रोड है।

नदी के किनारे पे बहोत सारी औरत लोग बैठे हैं।

घर के ऊपर थ्री कलर की माला झूला हुआ है।

एक टेबुल के ऊपर नीला कलर की कपड़ा है।

बहुत सारे बच्चे बैठ के पेपर के ऊपर कुछ लिख रहे है।

पार्लर के अंदर एक लेडिज काला एपरोंन पेहन के बैठा है।

केविन के अंदर गेम का बहोत सारी चीज रखा हुआ है।

घर के बाजू में एक में रोड गया है।

एक इलेक्ट्रिक का खंभा है और पॉलीथिन का छोटा घर बना हुआ --

दीवार के अंदर बहुत सारी ईंटें ईटी रखा हुआ है।

उसके अंदर एक छोटा सा कुआं जैसा ईटी में बना हुआ --

डेयरी के बाजू में और एक दुकान साफ है।

और डाइनिंग टेबुल के सामने तीनों दरवाजा है।

न दरवाजा के ऊपर डोर स्क्रीन है और अ अ ऊपर तीनों फैन है और को यहां पे कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहे --

साइकिल के ऊपर दो बच्चे बैठ के साइकिल चला रहे हैं।

एक रूम हैं रूम के दीवार के दीवार के ऊपर कांच का शेल्फ हैं शेल्फ के ऊपर छोटे छोटे गमला के ऊपर डिजाइन वाला पौधा लगा हुआ हैं।

गमला के कलर सफेद है पीला ब्लू ग्रीन रेड हैं।